इस शोरूम में बहुत से गाड़ी है।

यहाँ पे अनेक कलर के गाड़ी है यहाँ से बहुत से ग्राहक इसे खरीद कर ले जाते है।

यह टोटो तीन चक्के की है।

यहां पर काफी बड़े बिल्डिंग हैं।

यहां पर पैंथर लाइट हाउस लिखा हुआ है।